यह रोड का दृश्य है रोड मे हम देख सकते है कि वाहन चल रहे है और रोड उतना चौड़ा नही है।

स्टेडियम के ऊपर छत भी बना दी गई है जिससे लोग धूप से बच सके और बैठ के आराम से खेल का आनंद ले सके ।

यहाँ पर हम देख सकते है की बहुत सारी बच्चियां बैठी हुई है। ये बच्चे साथ मिलकर प्रोजेक्ट बना रहे है।

यहां पर सभी बच्चे मिलकर एक साथ प्रोजेक्ट बना रहे है।

और यहाँ पर यह बहुत हरा भरा लग रहा है और हम देख सकते है की ये काफी बड़ा भी है।